और काफी सारे पेड़ लगे जो की साइड में काफी गाड़ी भी लगी हुई नीचे काफी सारे दूभी हैं और साइड में उम्म काफी सारे हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रहे हैं।

ये बोहोत ही अच्छी तरह से म्म दी गई है और ये काफी सुन्दर और अद्भुत देखने को नजारा मिल रहा है जोकि बोहोत ही सुन्दर ये तरीका से बनाया गया है। ये कुर्सी भी काफी सुन्दर से बनाया गया है।

काफी सारी लगाई हुई है जो की देखने में काफी सुंदरता की और यहां पे साइड में एक टेबल जैसा बनाया हुआ --

सभी लकड़ी का भी लगाई गई है इसमें बहुत सारे लाइट्स भी देखने को मिलता है जो की बहुत ही अच्छे तरह से देखने को मिल रहा है लाइट्स भी हम बहुत ही सुंदर से देखने को मिल रहे हैं।

यहाँ पे काफी सारे बस भी लगी हुई हैं जो देखने में काफी सुन्दर देखने को मिलता है और ये साइड में काफी सारे गाड़ियां भी लगी हुई----

वहां पे इ पूरे उम्म दिखाई दे रही है बादल पूरे व्हाइट देखने को मिल रहा है।

पेट्रोल पंप है जो की काफी लंबे देखने को मिल रहा है और चौड़ाई बहुत कम है और लाइट्स मैं काउंटिंग करके बता दूं कि एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ लाइट्स दिया गया है बहुत ज्यादा।

बस भी लगी हुई हैं जो की में पेट्रोल दिया जाता हैं अच्छे से यहां दो दो पेट्रोल पम्प देखने को मिल रहे है और साइड में दिखाई दे रही।